ये देखो ये टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है पेन रखा हुआ है सोफे रखे हैं और यहां पे देखो पीछे कितने सारे सामान हैं।

चेयर्स हैं पीछे तीन चार एक आगे रखी है और ये सारे बैग रखे हुए हैं।

और पैकेट वगैरा भी रखे इनका खाने पीने का सारा सामान यहीं पे ही है।

और जो ये अंकल है इसने माक्स लगा रखा है और सिर पर भी कुछ टोपी पहन रखी है।

हुक्का रखा हुआ हैं पानी का कैम्पर हैं।

छोटे छोटे वो हैं जैसे बेंचेस होते है।

ये रेड कलर का ट्रैक्टर है और उससे पीछे भी एक है ब्लू कलर का एक बाइक खड़ी हैं।

ये बस स्टैंड है यहां पे बसे दिख रही हैं एक दूर दिख रही है और एक पास ही खड़ी है।

और इसमें कंडक्टर बैठा हुआ है।

और बाहर इसके मूवी बनी हुई हैं।

और पुतले खड़े हैं बाहर इन्होंने लड़ियां लगा रखी हैं वो लाइट वाली लड़ियां होती हैं।

ये है लेडिज फैशन फर्स्ट क्लास ।

ये पुतले पुतला है लड़की का और इसको फ्रॉक पहना रखी है येलो कलर की।

इसके बाल भी लगा रखे हैं पीछे बेंच दिख रहा है ना वहां पे भी समान रखा हुआ है।

और तीन आदमी इसमें और खरीदने वाले वहां पे भी खड़े हैं और यहां पे भी एक औरत खड़ी है और एक आदमी खड़ा इसके पीछे--

और इसके साथ में एक बाइक सी खड़ी है जिस पर--

देखो सामने इतने सारे पैकेट रखे हुए हैं।

ये क्लास रूम है ये सारे बच्चे टेबल पे बैठे हुए है।

और चित्र बनाकर लगा रखे दीवार पे और यह कल कुछ कुछ बनाकर अपने टेबल पर रखकर इन मैडम को दिखा रही है।

ये बस स्टैंड है यहां पे बहुत बसें खड़ी हैं और यहां पे कई ममतलब इस लड़के ने तो बैग टांग रखा है।

और ट्रक के पास भी दो तीन आदमी बैठे है और कट्टे के पास भी दो तीन आदमी बैठे है और इन्होंने कट्टे को कुछ डाल रखा है।

और ऊपर भी इतने सारे खिलौने गाड़ी वगैरा सारे टांग रखे हैं।